पाँच छे लोग आपस में खड़े होके बात कर रहे हैं।

जहाँ पे आइडिया वोडाफ़ोन ऑफिस का नंबर लिखा हुआ हैं।

बाहर पार्किंग खड़ी है और लोग वेट कर रहे हैं बाहर बैठकर।

ये फोटो एक पिकनिक एरिया की लग रही है।

जहाँ पे चर्च का सिम्बल बिलकुल ऊपर लगा हुआ है।

सजावट में करे हुए टेंट का कलर गुलाबी और पीला है।

और इसमें संग्राहलय के अंदर लोग अपने जूते चप्पल उतर के जा रहे हैं।

ये फोटो एक गांव की लग रही है।

और पीछे से दो आंटी जा रही हैं।

ये फोटो एक खाली मैदान की है।

ये फ़ोटो एक मज्जिद की है जो कि अभी खाली है।

और बोहोत सारे कपड़े यहां पिन्नी के अंदर पैक हुए फिर भी रखे हुए हैं।